बहुत ही ज्यादा पानी है नदी में। दूर-दूर से लोग यहाँ घुमने के लिए आते है फोटो खिंचवाने के लिए आते है। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ देखने में शाम के समय तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होते है।

ये टोटो है जो अभी भी बहुत चलते है टोटो । बहुत ही नामी टोटो है। सब कोई चढ़के एक जगह से दूसरे जगह जाते है। दूर-दूर सफर करने के लिए ये टोटो का उपयोग किया जाता। है बहुत ही सुंदर तरीके का बनाया गया है ये टोटो । बहुत ही नामी टोटो है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर है।

शादी हो रहे है बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ आये हुए है सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गए है यहाँ पंडाल बहुत ही सुंदर लगते है देखने में बहुत ही शानदार तरीके का बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा जगह पे यह बनाया गया है।

भोत ही नामी मेला है ये बहुत ही सुंदर ई लोग डांस भी करते है बहुत ही ज्यादा जनसँख्या लोग देखने के लिए इन लोग का डांस ।